छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पीछे बहोत सारे पेड़ है बिल्डिंग खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें की ए_सी लगी हुई दिखाई दे रही हैं ऊपर पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं फ्रिज रखा हुआ हैं।

यहां पे हम एक कोचिंग सेंटर देख रहे हैं जिसपे कि लड़कियां बैठी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पे हमें दो तीन लोग चार लोग दिखाई दे रहे हैं ।

यहां हम एक ऑफिस देख रहे हैं ऑफिस में ए_सी लगी हुई है लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

नीचे टाइल्स लगे हुएं दिखाई दे रहे हैं ऊपर पंखा चलता हुआ दिखाई दे रहा हैं।

बाहर एक चेयर पड़े हुई दिखाई दे रही है।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

एक बाइक खड़ी हुई हैं टायर रखे हुए दिखाई दे रहे खम्भा लगा हुआ हैं जिसमे से बिजली के तार लगे हुए हैं ।

यहां पे हम गाय देख रहे हैं जोकि बहुत सारी गाय हैं। ऊपर तीन पड़ी हुई हैं। गाय खड़ी हुई हैं।

यहाँ पे रेट गुबाड़े से सजावट की हुई दिखाई दे रही हैं गुबाड़े के सामने एक लड़का खड़ा हुआ हैं ।